यह एक छोटा -सा मंदिर दिखाई दे रहा हैं ।

उसके अगल -बगल में गाड़ी भी खड़ा है और बहुत लोग इधर- उधर घूम रहे है पेड़- पाधे लगे हुए हैं ।

मटमैला दिखाई पड़ रहे है उसके चारों तरफ़ --

रखे हुए है और पीछे में बांधे हुए लग रहे है उसके पीछे में एक घर है पक्का का --

और उसके चारों तरफ़ पेड़-पाउधे को लगा दिए है और खिड़की सब दिखाई दे रही हैं ।

खिड़की सब भी दिखाई दे रहे है उसके नीचे में मैदान सब --

जिसके बीच में एक पत्थर में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और --

बैठा हुआ है और उसके ऊपर में गणपति बब्बा का मूर्ति है जोकि --

बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हैं ।

गुब्बारे सब को बहुत ही सुन्दर सजाया गया है और ऊपर में लाइट व्यवस्था भी अच्छे से की गई --

जोकि बहोत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है और एक में अनार का --

ईशू का चिन्ह है और उसके ऊपर में आराधना घर लिखाया हुआ हैं ।

गुब्बारा सब को भी लगाए हुए है और तार सब ऊपर में लगे हैं ।